यह एक इंजीनियर साहब है यह इसके हाथ में ग्राफ कि है कि ये बिल्डिंग किस तरह --

यह भी सैलून दुकान है यहाँ पे एक लड़का मेक-अप किए हुए बैठे हैं और शीशे की ओर मोबाइल कैमरा खोल के और सेल्फी ले रहे है और उसके आगे में चश्मा और पर्स रखे हुए है।

यह स्मार्ट स्वीट्स हॉउस जगह का नाम है क्योंकि यहाँ बड़े बैनर --